टीचर्स आगे दिख रही हैं जो शायद डोनेशन कर रही हैं और साइड में हमे--

यह एक पार्क की फोटो है जिसका नाम डॉक्टर बीआर आंबेडकर हुड़्डा पार्क है।

बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ भी हैं आस पास।

यह एक हॉस्पिटल के बाहर की फोटो ही हो सकती है।

हॉस्पिटल के बाहर की फोटो है जो--

ऑफिस है यहां पे बहुत सारे लोग बाहर--

एक इंसान यहां पे धोती में आया हुआ है जिस--

बाहर कुछ कुर्सियां लगी हुई दिख रही है और साथ मे टेबल्स भी दिख रहे--

और हमें इसके नीचे इसके पास में ही एक खाने की ट्रॉली दिख रही है।

हमे साइड में कुछ मिट्टी दिखाई भी दे रही है और ऊपर एक कार आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन--

यह पता नहीं किस चीज की दुकान है लेकिन इसके--

और उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर हमें एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है बाहर देखें तो हमें कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा पोस्टर पे क्या लिख--

आग बुझाने वाले यंत्र रखे हुए हैं कुछ बड़े है कुछ छोटे है कुछ --